लगे हुए है और इसमे बहुत सारे फूल पताके भी लगे हुए --

बच्चे और पुरुष के आउट्साइड में--

पुरुष भी खड़ा हुआ है इस बाइक पर बैठे पुरुष के सामने भी एक --